मेरे प्यारे देशवासियो आप सबको नमस्कार
छुट्टियों में कई कार्यक्रम हर कोई बनाता है
और छुट्टियों में आम का सीजन होता है तो ये भी मन करता है कि आम का मज़ा लें और कभी ये भी मन करता है कि कुछ पल दोपहर को सोने का मौका मिल जाए तो अच्छा होगा
लेकिन इस बार की भयंकर गर्मी ने चारों तरफ सारा मज़ा किरकिरा कर दिया है
देश में चिंता होना बहुत स्वाभाविक है और उसमें भी जब लगातार सूखा पड़ता है तो पानीसंग्रह के जो स्थान होते हैं वो भी कम पड़ जाते हैं
कभीकभार एन्क्रोचमेंट के कारण सिल्टिंग के कारण पानी आने के जो प्रवाह हैं उसमें रुकावटों के कारण जलाशय भी अपनी क्षमता से काफी कम पानी संग्रहीत करते हैं और सालों के क्रम के कारण उसकी संग्रहक्षमता भी कम हो जाती है
सूखे से निपटने के लिए पानी के संकट से राहत के लिए सरकारें अपना प्रयास करें वो तो है लेकिन मैंने देखा है कि नागरिक भी बहुत ही अच्छे प्रयास करते हैं
कई गाँवों में जागरूकता देखी जाती है और पानी का मूल्य क्या है वो तो वही जानते हैं जिन्होनें पानी की तकलीफ़ झेली है
और इसलिए ऐसी जगह पर पानी के संबंध में एक संवेदनशीलता भी होती है और कुछनकुछ करने की सक्रियता भी होती है
मुझे कुछ दिन पहले कोई बता रहा था कि महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले के हिवरे बाज़ार ग्राम पंचायत और वहाँ के गाँव वालों ने पानी को गाँव के एक बहुत बड़े संवेदनशील इश्यू के रूप में एड्रेस किया
जल संचय करने की इच्छा करने वाले तो कई गाँव मिल जाते हैं लेकिन इन्होंने तो किसानों के साथ बातचीत करके पूरी क्रॉपिंग पैटर्न बदल दी
ऐसी फसल जो सबसे ज्यादा पानी उपयोग करती थी चाहे गन्ना हो केला हो ऐसी फसलों को छोड़ने का निर्णय कर लिया
सुनने में बात बहुत सरल लगती है लेकिन इतनी सरल नहीं है
सबने मिल करके कितना बड़ा संकल्प किया होगा किसी कारख़ाना वाला पानी का उपयोग करता हो कहोगे तुम कारख़ाना बंद करो क्योंकि पानी ज्यादा लेते हो तो क्या परिणाम आएगा आप जानते हैं
लेकिन ये मेरे किसान भाई देखिए उनको लगा कि भाई गन्ना बहुत पानी लेता है तो गन्ना छोड़ो उन्होंने छोड़ दिया
और पूरा उन्होंने फ्रूट और वेजिटेबल जिसमें कमसेकम पानी की ज़रूरत पड़ती है ऐसी फसलों पर चले गए
उन्होंने स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचाई वाटर हार्वेस्टिंग वाटर रिचार्जिंग इतने सारे इनिशिएटिव लिये कि आज गाँव पानी के संकट के सामने जूझने के लिए अपनी ताकत पर खड़ा हो गया
ठीक है मैं एक छोटे से गाँव हिवरे बाज़ार की चर्चा भले करता हूँ लेकिन ऐसे कई गाँव होंगे
मैं ऐसे सभी गाँववासियों को भी बहुतबहुत बधाई देता हूँ आपके इस उत्तम काम के लिए
मुझे किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश में देवास ज़िले में गोरवा गाँव पंचायत
पंचायत ने प्रयत्न करके फार्म पोंड बनाने का अभियान चलाया
करीब 27 फार्म पोंड्स बनाए और उसके कारण ग्राउंड वाटर लेवेल में बढ़ोत्तरी हुई पानी ऊपर आया
जब भी पानी की ज़रूरत पड़ी फ़सल को पानी मिला और वो मोटामोटा हिसाब बताते थे करीब उनकी कृषि उत्पादन में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई
तो पानी तो बचा ही बचा और जब पानी का वाटर टेबल ऊपर आता है तो पानी की क्वालिटी में भी बहुत सुधार होता है
और दुनिया में ऐसा कहते हैं शुद्ध पीने का पानी जीडीपी ग्राउथ का कारण बन जाता है स्वास्थ्य का तो बनता ही बनता है
कभीकभार तो लगता है कि जब भारत सरकार रेलवे से पानी लातूर पहुँचाती है तो दुनिया के लिए वो एक ख़बर बन जाती है
ये बात सही है कि जिस तेज़ी से रेलवे ने काम किया वो बधाई की पात्र तो है लेकिन वो गाँव वाले भी उतने ही बधाई के पात्र हैं
मैं तो कहूँगा उससे भी ज्यादा बधाई के पात्र हैं
लेकिन ऐसी अनेक योजनाएँ नागरिकों के द्वारा चलती हैं वो कभी सामने नहीं आती हैं
सरकार की अच्छी बात तो कभीकभी सामने आ भी जाती है लेकिन कभी हम अपने अगलबगल में देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि सूखे के खिलाफ़ किसकिस प्रकार से लोग नयेनये तौरतरीके से समस्या के समाधान के लिए प्रयास करते रहते हैं
मनुष्य का स्वभाव है कितने ही संकट से गुजरता हो लेकिन कहीं से कोई अच्छी ख़बर आ जाए तो जैसे पूरा संकट दूर हो गया ऐसा फील होता है
जब से ये जानकारी सार्वजनिक हुई कि इस बार वर्षा 106 प्रतिशत से 110 प्रतिशत तक होने की संभावना है जैसे मानो एक बहुत बड़ा शान्ति का सन्देश आ गया हो
अभी तो वर्षा आने में समय है लेकिन अच्छी वर्षा की ख़बर भी एक नयी चेतना ले आयी
लेकिन मेरे प्यारे देशवासियो अच्छी वर्षा होगी ये समाचार जितना आनंद देता है उतना ही हम सबके लिए एक अवसर भी देता है चुनौती भी देता है
क्या हम गाँवगाँव पानी बचाने के लिये एक अभी से अभियान चला सकते हैं किसानों को मिट्टी की जरुरत पड़ती है खेत में वो फसल के नाते काम आती है
क्यों न हम इस बार गाँव के तालाबों से मिट्टी उठाउठा करके खेतों में ले जाएँ तो खेत की ज़मीन भी ठीक होगी तो उसकी जलसंचय की ताकत भी बढ़ जायेगी
कभी सीमेंट के बोरे में कभी फर्टिलाइजर के खाली बोरे में पत्थर और मिट्टी भरके जहाँ से पानी जाने के रास्ते हैं उस पानी को रोका जा सकता है क्या पाँच दिन पानी रुकेगा सात दिन पानी रुकेगा तो पानी ज़मीन में जाएगा
तो ज़मीन में पानी के लेवेल ऊपर आयेंगे
हमारे कुओं में पानी आएगा
जितना पानी हो सकता है रोकना चाहिए
वर्षा का पानी गाँव का पानी गाँव में रहेगा ये अगर हम संकल्प करके कुछ न कुछ करें और ये सामूहिक प्रयत्नों से संभव है
तो आज भले पानी का संकट है सूखे की स्थिति है लेकिन आने वाला महीना डेढ़ महीने का हमारे पास समय है और मैं तो हमेशा कहता हूँ कभी हम पोरबंदर महात्मा गाँधी के जन्मस्थान पर जाएँ तो जो वहाँ अलगअलग स्थान हम देखते हैं तो उसमें एक जगह वो भी देखने जैसी है कि वर्षा के पानी को बचाने के लिए घर के नीचे किस प्रकार के टैंक दो सौदो सौ साल पुराने बने हुए हैं और वो पानी कितना शुद्ध रहता था
कोई श्रीमान कुमार कृष्णा उन्होंने माइगोव पर लिखा है और एक प्रकार से जिज्ञासा भी व्यक्त की है
वो कहते हैं कि हमारे रहते हुए कभी गंगा सफाई का अभियान संभव होगा क्या उनकी चिंता बहुत स्वाभाविक है क्योंकि करीबकरीब 30 साल से ये काम चल रहा है
कई सरकारें आईं कई योजनायें बनीं ढेर सारा खर्चा भी हुआ और इसके कारण भाई कुमार कृष्णा जैसे देश के करोड़ों लोगों के मन में ये सवाल होना बहुत स्वाभाविक है
जो लोग धार्मिक आस्था में रहते हैं उनके लिए गंगा मोक्षदायिनी है
लेकिन मैं उस माहात्म्य को तो स्वीकार करूंगा ही पर इससे ज्यादा मुझे लगता है कि गंगा ये जीवनदायिनी है
गंगा से हमें रोटी मिलती है
गंगा से हमें रोज़ी मिलती है
गंगा से हमें जीने की एक नयी ताक़त मिलती है
गंगा जैसे बहती है देश की आर्थिक गतिविधि को भी एक नयी गति देती है
एक भगीरथ ने गंगा तो हमें ला कर दे दी लेकिन बचाने के लिए करोड़ोंकरोड़ों भगीरथों की ज़रूरत है
जन भागीदारी के बिना ये काम कभी सफल हो ही नहीं सकता है और इसलिए हम सबने सफाई के लिए स्वच्छता के लिए एक चंगे एजेंट बनना पड़ेगा
बारबार बात को दोहराना पड़ेगा कहना पड़ेगा
सरकार की तरफ़ से कई सारे प्रयास चल रहे हैं
गंगा तट पर जोजो राज्य हैं उन राज्यों का भी भरपूर सहयोग लेने का प्रयास हो रहा है
सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों को भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है
सरफेस क्लीनिंग और इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर रोकने के लिए काफी कदम उठाए हैं
हर दिन गंगा में बड़ी मात्रा में नालों के रास्ते से ठोस कचरा बह करके अन्दर आता है
ऐसे कचरे को साफ़ करने के लिए वाराणसी इलाहाबाद कानपुर पटना ऐसे स्थानों पर ट्रैश स्किमर पानी में तैरतेतैरते कचरा साफ़ करने का काम करते हैं
सभी लोकल बॉडीज को ये मुहैया कराया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि इसको लगातार चलाएँ और वहीं से कचरा साफ़ करते चलें
और पिछले दिनों मुझे जो बताया गया कि जहाँ बड़े अच्छे ढंग से प्रयास होता है वहाँ तो तीन टन से ग्यारह टन तक प्रतिदिन कचरा निकाला जाता है
तो ये तो बात सही है कि इतनी मात्रा में गंदगी बढ़ने से रुक ही रही है
आने वाले दिनों में और भी स्थानों पर ट्रैश स्किमर लगाने की योजना है और उसका लाभ गंगा और यमुना तट के लोगों को तुरंत अनुभव भी होगा
इंडस्ट्रियल प्रदूषण पर नियन्त्रण के लिए पल्प एंड पेपर डिस्टिलरी एवं सुगर इंडस्ट्री के साथ एक एक्शन प्लान प्लान बन गया है
कुछ मात्रा में लागू होना शुरू भी हुआ है
उसके भी अच्छे परिणाम निकलेंगे ऐसा अभी तो मुझे लग रहा है
मुझे इस बात की ख़ुशी है कि मुझे बताया गया कि उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश वहाँ जो डिस्टिलरी का जो डिसचार्ज होता था तो पिछले दिनों कुछ अफसर मुझे बता रहे थे कि ज़ेरो लिक्विड डिसचार्ज की ओर उन्होंने सफलता पा ली है
पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री या ब्लैक लिकोर की निकासी लगभग पूरी तरह ख़त्म हो रही है
ये सारे इस बात के संकेत हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और एक जागरूकता भी बढ़ी है
और मैंने देखा है कि सिर्फ़ गंगा के तट के नहीं दूरसुदूर दक्षिण का भी कोई व्यक्ति मिलता है तो ज़रूर कहता है कि साहब गंगा सफ़ाई तो होगी न तो यही एक जो जनसामान्य की आस्था है वो गंगा सफ़ाई में ज़रूर सफलता दिलाएगी
गंगा स्वच्छता के लिये लोग डोनेशन भी दे रहे हैं
एक काफ़ी अच्छे ढंग से इस व्यवस्था को चलाया जा रहा है
मेरे प्यारे देशवासियो आज 24 अप्रैल है
भारत में इसे पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है
आज ही के दिन पंचायती राज व्यवस्था का हमारे देश में आरम्भ हुआ था और आज धीरेधीरे पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था हमारी लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है
14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर की 125वीं जयंती हम मना रहे थे और आज 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मना रहे हैं
ये ऐसा सुभग संयोग था जिस महापुरुष ने हमें भारत का संविधान दिया उस दिन से लेकर के 24 तारीख़ जो कि संविधान की सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है वो हमारा गाँव दोनों को जोड़ने की प्रेरणा और इसलिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के सहयोग के साथ 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 10 दिन ग्रामोदय से भारतोदय अभियान चलाया
ये मेरा सौभाग्य था कि 14 अप्रैल को बाबा साहब आंबेडकर जी के जन्मदिन मुझे बाबा साहब आंबेडकर का जन्म स्थान महू वहाँ जाने का अवसर मिला
उस पवित्र धरती को नमन करने का अवसर मिला
और आज 24 तारीख़ को मैं झारखण्ड में जहाँ हमारे अधिकतम आदिवासी भाईबहन रहते हैं उस प्रदेश में आज जा करके पंचायती राज दिवस मनाने वाला हूँ और दोपहर को 3 बजे फिर एक बार पंचायती राज दिवस पर मैं देश की सभी पंचायतों से बातचीत करने वाला हूँ
इस अभियान ने एक बहुत बड़ा जागरूकता का काम किया है
हिन्दुस्तान के हर कोने में गाँव के स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएँ कैसे मजबूत बनें गाँव स्वयं आत्मनिर्भर कैसे बनें ग्राम स्वयं अपने विकास की योजना कैसे बनाएँ इंफ्रास्ट्रक्चर का भी महत्व हो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी महत्व हो
गाँव में ड्रॉपआउट न हों बच्चे स्कूल न छोड़ दें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफलता पूर्वक चले
बेटी का जन्मदिन गाँव का महोत्सव बनना चाहिये कई ऐसी योजनायें कुछ गाँव में तो फूड डोनेशन का कार्यक्रम हुआ
शायद ही एक साथ हिन्दुस्तान के इतने गाँवों में इतने विविध कार्यक्रम 10 दिन चले हों ये बहुत कम होता है
मैं सभी राज्य सरकारों को ग्राम प्रधानों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने बहुत ही मौलिक तरीक़े से नवीनता के साथ इस पूरे अवसर को गाँव की भलाई के लिये गाँव के विकास के लिये लोकतंत्र की मज़बूती के लिये एक अवसर में परिवर्तित किया
गाँवों में जो जागरूकता आयी है वही तो भारतउदय की गारंटी है
भारतउदय का आधार ग्रामउदय ही है और इसलिए ग्रामउदय पर हम सब बल देते रहेंगे तो इच्छित परिणाम प्राप्त करके ही रहेंगे
मुम्बई से शर्मिला धारपुरे आपने मुझे फ़ोन कॉल पर अपनी चिंता जतायी है
प्रधानमंत्री जी नमस्कार मैं शर्मिला धारपुरे बोल रही हूँ मुम्बई से
मेरा आपसे स्कूल और कॉलेज एड्यूकेशन के बारे में सवाल है
जैसे एड्यूकेशन सेक्टर में पिछले बहुत वर्षों से सुधार की जरुरत पाई गयी है
पर्याप्त स्कूलों का या कॉलेजेस का न होना या फिर शिक्षा में एड्यूकेशन की क्वालिटी न होना
ऐसा पाया गया है कि बच्चे अपना एड्यूकेशन पूरा भी कर लेते हैं उन्हें फिर भी अक्सर बेसिक चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है
उससे हमारे बच्चे दुनिया की दौड़ में पीछे पड़ जाते हैं
इस बारे में आपके क्या विचार हैं और आप इस सेक्टर को किस तरह से इसमें सुधार लाना चाहते हैं इसके बारे में कृपया हमें बताइए
ये चिंता बहुत स्वाभाविक है
आज हर परिवार में माँबाप का अगर पहला कोई सपना रहता है तो वो रहता है बच्चों की अच्छी शिक्षा
घरगाड़ी सब बाद में विचार आता है और भारत जैसे देश के लिए जनमन की ये भावना है वो बहुत बड़ी ताक़त है
बच्चों को पढ़ाना और अच्छा पढ़ाना
अच्छी शिक्षा मिले उसकी चिंता होना ये और अधिक बढ़ना चाहिये और अधिक जागरूकता आनी चाहिए
और मैं मानता हूँ जिन परिवारों में ये जागरूकता होती है उसका असर स्कूलों पर भी आता है शिक्षकों पर भी आता है और बच्चा भी जागरूक होता जाता है कि मैं स्कूल में इस काम के लिए जा रहा हूँ
और इसलिये मैं सभी अभिभावकों से माँबाप से सबसे पहले यह आग्रह करूँगा कि बच्चे के साथ स्कूल की हो रही गतिविधियों से विस्तार से समय देकर के बातें करें
और कुछ बात ध्यान में आए तो खुद स्कूल में जा करके शिक्षकों से बात करें
ये जो विजिलेंस है ये भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में कई बुराइयों को कम कर सकता है और जन भागीदारी से तो ये होना ही होना है
हमारे देश में सभी सरकारों ने शिक्षा पर बल दिया है और हर कोई सरकार ने अपनेअपने तरीक़े से प्रयास भी किया है
और ये भी सच्चाई है कि काफ़ी अरसे तक हम लोगों का ध्यान इसी बात पर रहा कि शिक्षा संस्थान खड़े हों शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो स्कूल बनें कॉलेजेस बनें टीचर्स की भर्ती हो अधिकतम बच्चे स्कूल आएँ
तो एक प्रकार से शिक्षा को चारों तरफ़ फ़ैलाने का प्रयास ये प्राथमिकता रही और ज़रूरी भी था लेकिन अब जितना महत्व विस्तार का है उससे भी ज़्यादा महत्व हमारी शिक्षा में सुधार का है
विस्तार का एक बहुत बड़ा काम हम कर चुके हैं
अब हमें क्वालिटी एड्यूकेशन पर फोकस करना ही होगा
साक्षरता अभियान से अब अच्छी शिक्षा ये हमारी प्राथमिकता बनानी पड़ेगी
अब तक हिसाबकिताब आउटले का होता था अब हमें आउटकम पर ही फोकस करना पड़ेगा
अब तक स्कूल में कितने आये उस पर बल था अब स्कूलिंग से ज़्यादा लर्निंग की ओर हमें बल देना होगा
एनरोलमेंट एनरोलमेंट एनरोलमेंट ये मंत्र लगातार गूँजता रहा लेकिन अब जो बच्चे स्कूल में पहुंचे हैं उनको अच्छी शिक्षा योग्य शिक्षा इसी पर हमने ध्यान केन्द्रित करना होगा
वर्तमान सरकार का बजट भी आपने देखा होगा
अच्छी शिक्षा पर बल देने का प्रयास हो रहा है
ये बात सही है कि बहुत बड़ी लम्बी सफ़र काटनी है
लेकिन अगर हम सवासौ करोड़ देशवासी तय करें तो लम्बी सफ़र भी कट सकती है
लेकिन शर्मिला जी की बात सही है कि हम में आमूलचूल सुधार लाने की ज़रूरत है
इस बार बजट में आपने देखा होगा कि लीक से हटकर के काम किया गया है
बजट के अन्दर दस सरकारी यूनिवर्सिटी और दस प्राइवेट यूनिवर्सिटी उनको सरकारी बंधनों से मुक्ति देने का और चैलेंज राउटे पर उनको आने के लिए कहा है कि आइये आप टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी बनने के लिए क्या करना चाहते हैं बताइये
उनको खुली छूट देने के इरादे से ये योजना रखी गयी है
भारत की यूनिवर्सिटीज भी वैश्विक स्पर्धा करने वाली यूनिवर्सिटी बन सकती है बनानी भी चाहिए
इसके साथसाथ जितना महत्व शिक्षा का है उतना ही महत्व स्किल का है उसी प्रकार से शिक्षा में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोले प्ले करेगी
लोंग डिस्टेंस एड्यूकेशन टेक्नोलॉजी ये हमारी शिक्षा को सरल भी बनाएगी और ये बहुत ही निकट भविष्य में इसके परिणाम नज़र आएँगे ऐसा मुझे विश्वास है
बड़े लम्बे समय से एक विषय पर लोग मुझे पूछते रहते हैं कुछ लोग वेब पोर्टल माइगोव पर लिखते हैं कुछ लोग मुझे NarendraModiApp पर लिखते हैं और ज़्यादातर ये नौजवान लिखते हैं
प्रधानमंत्री जी नमस्कार मैं मोना कर्णवाल बोल रही हूँ बिजनौर से
आज के जमाने में युवाओं के लिए पढ़ाई के साथसाथ स्पोर्ट्स का भी बहुत महत्व है
उनमें टीम स्पिरिट की भावना भी होनी चाहिए और अच्छे लीडर होने के गुण भी होने चाहिए जिससे कि उनका ओवरॉल होलिस्टिक डेवलपमेंट हो
ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में रह चुकी हूँ और इसका मेरे जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा
मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मोटीवेट करें
मैं चाहती हूँ कि सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा एनसीसी एनएसएस और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को प्रोमोट करे
आप लोग मुझे इतने सुझाव भेजते रहते थे तो एक दिन मुझे भी लगा कि मैं आप लोगों से बात करूँ कि इससे पहले मैं इन सबसे से बातचीत करूँ
तो आप ही लोगों का दबाव था आप ही लोगों के सुझाव थे उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने ऐसी एक अभी मीटिंग बुलायी जिसमें एनसीसी के मुखिया थे एनएसएस के थे स्काउट एंड गाइड के थे रेड क्रॉस के थे नेहरु युवा केंद्र के थे
और जब मैंने उनको पूछा कि पहले कब मिले थे तो उन्होंने कहा नहींनहीं भाई हम तो देश आज़ाद होने के बाद इस प्रकार की मीटिंग ये पहली हुई है
तो मैं सबसे पहले तो उन युवामित्रों का अभिनन्दन करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर दबाव डाला इन सारे कामों के संबंध में
और उसी का परिणाम है कि मैंने मीटिंग की और मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि मैं मिला
बहुत कोआर्डिनेशन की आवश्यकता लगी मुझे
अपनेअपने तरीक़े से बहुतकुछ हो रहा है लेकिन अगर सामूहिक रूप से संगठित रूप से हमारे भिन्नभिन्न प्रकार के संगठन काम करें तो कितना बड़ा परिणाम दे सकते हैं
और कितना बड़ा फैलाव है उनका कितने परिवारों तक ये पहुँचे हुए हैं
तो मुझे इनका व्याप देखकर के तो बड़ा ही समाधान हुआ
और उनका उमंग भी बहुत था कुछनकुछ करना था
और ये तो बात सही है कि मैं तो स्वयं ही एनसीसी का कैडेट रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि ऐसे संगठनों से एक नई दृष्टि मिलती है प्रेरणा मिलती है एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण पनपता है
तो मुझे तो बचपन में वो लाभ मिला ही मिला है और मैं भी मानता हूँ कि इन संगठनों में एक नया प्राण भरना चाहिये नई ताक़त भरनी चाहिये
इस बार अब मैंने उनके सामने कुछ रखे हैं विषय
मैंने उनको कहा है कि भाई इस सीजन में जलसंचय का बड़ा काम हमारे युवा सारे संगठन क्यों न करें
हम लोग प्रयास करके कितने ब्लॉक कितने जिले खुले में शौच जाना बंद करवा सकते हैं
ओपन डेफेकेशन फ्री कैसे कर सकते हैं देश को जोड़ने के लिए ऐसे कौन से कार्यकर्मों की रचना कर सकते हैं हम सभी संगठनों के कॉमन युवागीत क्या हो सकता है कई बातें उनके साथ हुई हैं
मैं आज आपसे भी आग्रह करता हूँ आप भी मुझे बताइए बहुत परफेक्ट सुझाव बताइए कि हमारे अनेकअनेक युवा संगठन चलते हैं
उनकी कार्यशैली कार्यक्रम में क्या नई चीज़ें जोड़ सकते हैं मेरे NarendraModiApp पर आप लिखोगे तो मैं उचित जगह पर पहुँचा दूँगा और मैं मानता हूँ कि इस मीटिंग के बाद काफ़ी कुछ उन में गति आएगी ऐसा तो मुझे लग रहा है और आपको भी उसके साथ जुड़ने का मन करेगा ऐसी स्थिति तो बन ही जाएगी
मेरे प्यारे देशवासियो आज हम सब को सोचने के लिए मज़बूर करने वाली बात मुझे करनी है
मैं इसे हम लोगों को झकझोरने वाली बात के रूप में भी देखता हूँ
आपने देखा होगा कि हमारे देश की राजनैतिक अवस्था ऐसी है कि पिछले कई चुनावों में इस बात की चर्चा हुआ करती थी कि कौन पार्टी कितने गैस के सिलिंडर देगी 12 सिलिंडर कि 9 सिलिंडर ये चुनाव का बड़ा मुद्दा हुआ करता था
और हर राजनैतिक दल को लगता था कि मध्यमवर्गीय समाज को चुनाव की दृष्टि से पहुँचना है तो गैस सिलिंडर एक बहुत बड़ाइश्यू है
दूसरी तरफ़ अर्थशास्त्रियों का दबाव रहता था कि सबसिडी कम करो और उसके कारण कई कमेटियाँ बैठती थीं जिसमें गैस की सबसिडी कम करने पर बहुत बड़े प्रस्ताव आते थे सुझाव आते थे
इन कमेटियों के पीछे करोड़ों रुपए के खर्च होते थे
लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाती थी
यह अनुभव सबका है
लेकिन इसके बाहर कभी सोचा नहीं गया
आज मेरे देशवासियो आप सब को मेरा हिसाब देते हुए मुझे आनंद होता है कि मैंने तीसरा रास्ता चुना और वो रास्ता था जनताजनार्दन पर भरोसा करने का
कभीकभी हम राजनेताओं को भी अपने से ज़्यादा अपनों पर भरोसा करना चाहिये
मैंने जनताजनार्दन पर भरोसा करके ऐसे ही बातोंबातों में कहा था कि अगर आप साल भर के पंद्रह सौ दो हज़ार रुपया खर्च का बोझ सहन कर सकते हैं तो आप गैस सबसिडी क्यों नहीं छोड़ देते किसी ग़रीब के काम आएगी
ऐसे ही मैंने बात कही थी लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ मुझे नाज़ हो रहा है मेरे देशवासियों पर
एककरोड़ परिवारों ने स्वेच्छा से अपनी गैस सबसिडी सुरेंद्र कर दीI और ये एक करोड़ परिवार अमीर नहीं हैंI मैं देख रहा हूँ कोई रिटायर्ड टीचर रिटायर्ड क्लर्क कोई किसान कोई छोटासा दुकान चलाने वाला ऐसे मध्यमवर्ग निम्न मध्यमवर्ग के परिवार हैं जिन्होंने छोड़ाI दूसरी विशेषता देखिए कि सबसिडी छोड़ने के लिए मोबाइल फोन की अप्प से कर सकते थे ओनलाइन कर सकते थे टेलीफोन पर मिस्ड कॉल करके कर सकते थे बहुत तरीके थेI लेकिन हिसाब लगाया गया तो पता चला कि इन एककरोड़ परिवारों में 80 परसेंट से ज्यादा लोग वो थे जो स्वयं डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ ख़ुद गए कतार में खड़े रहे और लिखित में देकर के उन्होंने अपनी सबसिडी सुरेंद्र कर दीI
मेरे प्यारे देशवासियो ये छोटी बात नहीं है
सरकार अगर कोई एक टैक्स में थोड़ीसी भी रियायत दे दे छूट दे दे तो हफ़्ते भर टीवी और अखबारों में उस सरकार की वाहवाही सुनाई देती हैI एककरोड़ परिवारों ने सबसिडी छोड़ दी और हमारे देश में सबसिडी एक प्रकार से हक़ बन गया है उसे छोड़ दियाI मैं सबसे पहले उन एककरोड़ परिवारों को शतशत नमन करता हूँ अभिनन्दन करता हूँI क्योंकि उन्होंने राजनेताओं को नये तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया हैI इस एक घटना ने देश के अर्थशास्त्रियों को भी नये तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर दिया हैI और दुनिया के अर्थवेत्ता भी ऐसा होगा तो ऐसा होगा ऐसा करेंगे तो वैसा निकलेगा इस प्रकार जो आर्थिक समीकरण बनाते हैं उनके लिये भी उनकी सोच की मर्यादाओं से बाहर की ये घटना है
इस पर कभीनकभी सोचना पड़ेगाI एककरोड़ परिवारों का सब्सिडी छोड़ना बदले में करोड़ों ग़रीब परिवारों को गैस सिलिंडर मिलनाI एक करोड़ परिवारों का सब्सिडी छोड़ने से रुपयों का बचत होना ये बाहरी दृष्टि से बहुत सामान्य बातें हैं
असामान्य बात ये है कि जनता पर भरोसा रखकर के काम करें तो कितनी बड़ी सिद्धि मिलती हैI मैं ख़ासकर के पूरे पॉलिटिकल क्लास को आज आग्रह से कहना चाहूँगा कि हम हर जगह पर जनता पर भरोसा रखने वाली एक बात ज़रूर करें
आपने कभी सोचा नहीं होगा वैसा परिणाम हमें मिलेगाI और हमें इस दिशा में जाना चाहिएI और मुझे तो लगातार लगता है कि जैसे मेरे मन में आया कि ये वर्ग 3 और 4 के इंटरव्यू क्यों करें भईI जो अपना एक्साम देकर के मार्क्स भेज रहा है उस पर भरोसा करेंI कभी तो मुझे ऐसा भी लगता है कि हम कभी घोषित करें कि आज रेलवे की वो जो राउटे है उसमें कोई टिकेट चेकर नहीं रहेगाI देखिये तो देश की जनता पर हम भरोसा करेंI बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैंI एक बार देश की जनता पर हम भरोसा करें तो अप्रतिम परिणाम मिल सकते हैंI खैर ये तो मेरे मन के विचार हैं इसको कोई सरकार का नियम तो नहीं बना सकते लेकिन माहौल तो बना सकते हैंI और ये माहौल कोई राजनेता नहीं बना रहा हैI देश के एक करोड़ परिवारों ने बना दिया हैI
रवि करके किसी सज्जन ने मुझे पत्र लिखा है गुड न्यूज एवरी डे
वो लिख रहे हैं कि कृपया अपने अधिकारियों से कहिए कि हर दिन कोई एक अच्छी घटना के बारे में पोस्ट करेंI प्रत्येक न्यूजपेपर और न्यूज चैनल में हर ब्रेकिंग न्यूज बुरी न्यूज ही होती हैI क्या सवासौ करोड़ आबादी वाले देश में हमारे आसपास कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है कृपया इस हालत को बदलिएI रवि जी ने बड़ा गुस्सा व्यक्त किया हैI लेकिन मैं मानता हूँ कि शायद वो मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं हालात पर गुस्सा कर रहे हैंI आप को याद होगा भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा ये बात कहते थे कि अख़बार के पहले पन्ने पर सिर्फ़ पॉजिटिव ख़बरें छापिएI वे लगातार इस बात को कहते रहते थेI कुछ दिन पहले मुझे एक अख़बार ने चिट्ठी भी लिखी थीI उन्होंने कहा था कि हमने तय किया है कि सोमवार को हम एक भी नेगेटिव ख़बर नहीं देंगे पॉजिटिव ख़बर ही देंगेI इन दिनों मैंने देखा है कुछ tव
चैनल पॉजिटिव ख़बरों का समय स्पेशली तय करके दे रहे हैंI तो ये तो सही है कि इन दिनों अब माहौल बना है पॉजिटिव ख़बरों काI और हर किसी को लग रहा है कि सही ख़बरें अच्छी ख़बरें लोगों को मिलती रहेंI एक बात सही है कि बड़ेसेबड़ा व्यक्ति भी उत्तमसेउत्तम बात बताए अच्छेसेअच्छे शब्दों में बताए बढ़ियासेबढ़िया तरीके से बताए उसका जितना प्रभाव होता है उससे ज्यादा कोई अच्छी ख़बर का होता हैI अच्छी ख़बर अच्छा करने की प्रेरणा का सबसे बड़ा कारण बनती हैI तो ये तो सही है कि जितना हम अच्छाई को बल देंगे तो अपने आप में बुराइयों के लिए जगह कम रहेगीI अगर दिया जलायेंगे तो अंधेरा छंटेगा ही छंटेगा ही छंटेगा हीI और इसलिए आप को शायद मालूम होगा सरकार की तरफ़ से एक वेबसाइट चलाई जा रही है ट्रांसफार्मिंग इंडिया
इस पर सकरात्मक ख़बरें होती हैंI और सिर्फ सरकार की नहीं जनता की भी होती हैं और ये एक ऐसा पोर्टल है कि आप भी अपनी कोई अच्छी ख़बर है तो उसमें आप भेज सकते हैंI आप भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं
अच्छा सुझाव रवि जी आपने दिया है लेकिन कृपा करके मुझ पर गुस्सा मत कीजिएI हम सब मिल करके पॉजिटिव करने का प्रयास करें पॉजिटिव बोलने का प्रयास करें पॉजिटिव पहुँचाने का प्रयास करेंI
हमारे देश की विशेषता है कुंभ मेलाI कुंभ मेला टूरिज्म के आकर्षण का भी केंद्र बन सकता हैI दुनिया के बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि इतने लंबे समय तक नदी के तट पर करोड़ोंकरोड़ों लोग आएI शांतचित्त शांतिपूर्ण वातावरण में अवसर संपन्न होI ये घटनायें अपने आप में आर्गेनाइजेशन की दृष्टि से इवेंट मैनेजमेंट की दृष्टि से जन भागीदारी की दृष्टि से बहुत बड़े नए मानक सिद्ध करने वाली होती हैंI पिछले दो दिन से मैं देख रहा हूँ कि कई लोग सिंहस्थ कुंभ की तस्वीरें अपलोड कर रहे हैंI मैं चाहूँगा कि भारत सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट राज्य सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट इसकी कॉम्पिटिशन करे फोटो कॉम्पिटिशन और लोगों को कहे कि बढ़िया से बढ़िया फोटो निकाल करके आप अपलोड कीजिएI कैसा एक दम से माहौल बन जायेगा और लोगों को भी पता चलेगा कि कुंभ मेले के हर कोने में कितनी विविधताओं से भरी हुई चीज़ें चल रही हैं
तो ज़रूर इसको किया जा सकता हैI देखिये ये बात सही है
मुझे बीच में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री जी मिले थे वो बता रहे थे कि हमने स्वच्छता पर विशेष बल दिया है और स्वच्छता वहीं रहे ऐसा नहीं वहाँ से लोग स्वच्छता का संदेश भी ले के जाएँI मैं मानता हूँ ये कुंभ मेला भले धार्मिकआध्यात्मिक मेला हो लेकिन हम उसको एक सामाजिक अवसर भी बना सकते हैं
संस्कार का अवसर भी बना सकते हैंI वहाँ से अच्छे संकल्प अच्छी आदतें लेकर के गाँवगाँव पहुँचाने का एक कारण भी बन सकता हैI हम कुंभ मेले से पानी के प्रति प्यार कैसे बढ़े जल के प्रति आस्था कैसे बढ़े जलसंचय का संदेश देने में कैसे इस कुंभ मेले का भी उपयोग कर सकते हैं हमें करना चाहिएI
मेरे प्यारे देशवासियो पंचायतराज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर शाम को तो मैं आपको फिर से एक बार मिलूँगा ही मिलूँगा आप सब का बहुतबहुत धन्यवादI और हरहमेश की तरह आपके मन की बात ने मेरे मन की बात के साथ एक अटूट नाता जोड़ा है इसका मुझे आनंद हैI फिर एक बार बहुतबहुत धन्यवाद